कोई दुर्घटना ना हो करके एक--

बुजुर्गों को संस्था के बारे में अच्छी और बुरी बातें बता रहा है संस्था को एक्सेप्ट करने के लिए--

बहुत कोमल दिखाई दे रहे हैं जिसमें शॉल वगैरह त तकिया र रखा हुआ है।

ये एक गार्डन है यहां छोटे छोटे पौधे फूल के लगाए जाते हैं इन्हें बेचा जाता है।

ये एक मार्ट है यहां पर सिर्फ मार्ट दिखाई दे रहा जिसमें--

जिसमें एक काउंटर भी दिखाई दे रहा है काउंटर में एक--

में कलर दिखाई दे रहा है जो ब्लू कलर का शर्ट है और टी_शर्ट है।

का सेटअप भी किया गया है जिसमें लाइट्स डी_जे लाइट्स --

सारी किराना सामान की चीजें रखी गई है।

ग्रीन कलर के बड़े ग्रीन कलर के पत्ते दिखाई दे रहे हैं।

सड़क दिखाई गई है ये राउंड सड़क--

जो एक सेल्फ में जमा कर रखे गए हैं।

यहां गांव के कस्बे के बगल में हो रहा है।